और साथ ही साथ एक जूस की बॉटल भी दिखाई दे रही है।

और साथ ही साथ नीला आसमान दिखाई दे रहा हैं।